लग रहे है बदल भी छाए हुए है जो दिन में बहुत सुन्दर लग रहे है यहाँ पास टेंट भी लगा हुआ है आदमी भी दिख रहे--

नदी दिख रही है यह पर पखकन भी है यहाँ पस गिट्टी भी है जो दिखने मे बहुत सुन्दर दिख रही हैं।